काफी अच्छे तरीके से फूलों से सजाया हुआ है।

एक पार्क पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ काफी सारे फल और फ्रूट भी रखे हुए हैं।

यहाँ पे लोग सब्जी खरीदने आये हुए हैं।

इस चित्र में हमें मोसंबी भी दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें एक बड़ी सारी मस्जिद दिखाई दे रही है।

यहाँ काफी सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं।

यहाँ कुछ कंबल भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां लोग फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहे हैं।

यहां काफी सारी टेबलें और कुर्सियां रखी हुई हैं।

और ये समुद्र के किनारे खड़ी हुई है यहाँ पर तीन लोग हमें दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ काफी सारी मिट्टी भी पड़ी हुई है।

जहां तीन हिरण के सींग रखे हुए हैं।

और एक लैंप भी टंगा हुआ है।

की बाउंड्री वॉल भी सफेद रंग की है।

और यहां काफी सारी लेडिस के कपड़े भी दिख रहे हैं।

जिसके ऊपर पानी की टंकी रखी हुई है।

यहाँ काफी सारे लोग खाना खाने आए हुए हैं।

पीछे काफ़ी बड़ा सारा जंगल भी दिखाई दे रहा है।